ruby में while और until लूप्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न उपयोग करना सीखेंगे
while loop
until loop
redo
और break
हम उपयोग कर रहे हैं
ubuntu version 1204
ruby 193
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है
आपको लिनक्स कमांड्स टर्मिनल और टेक्स्टएडिटर का ज्ञान होना भी ज़रूरी है
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी website पर जाएँ
शुरू करने से पहले याद रखें कि हमने ttt डिरेक्टरी पहले ही बना ली थी
उस डिरेक्टरी पर जाते हैं
फिर ruby hyphen tutorial और looping hyphen statements डिरेक्टरी पर
अब हम उस फोल्डर में हैं आगे बढ़ते हैं
ruby में while लूप का रचनाक्रम निम्न प्रकार है:
while boolean एक्सप्रेशन
ruby कोड
end
एक उदाहरण देखते हैं
gedit में एक नयी फाइल बनाते हैं जैसा कि ruby के प्रारंभिक स्तर के ट्यूटोरियल्स में दर्शाया है
इसको while hyphen loop dot rb नाम दें
मेरे पास while लूप का कार्यकारी उदाहरण है
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit space while hyphen loop dot rb space & ampersand
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
इस उदाहरण में मैंने एक while लूप घोषित किया है
पहले मैंने एक लोकल वेरिएबल i घोषित किया और इसे वैल्यू 0 से शुरू किया
फिर मैं एक while लूप घोषित करती हूँ
यह लूप निष्पादित होगा अगर i 10 से ग्रेटर है
puts मेथड while लूप में घोषित हुआ है जो आउटपुट दर्शायेगा
आउटपुट दर्शाने से पहले i की वैल्यू में 1 की कमी करते हैं
अगली बार दोहराते समय i इस कम की गयी वैल्यू को लेगा
हर बार दोहराते समय वेरिएबल i में कमी होती है
यह चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 10 तक न पहुँच जाये
इस पॉइंट पर while कंडीशन रुक जाएगी
इसके पश्चात लूप टूट जाता है और आउटपुट प्रिंट होना रुक जाता है
अब टर्मिनल पर जाते हैं और टाइप करें ruby space while hyphen loop dot rb और आउटपुट देखें
आउटपुट में 0 से 9 तक के नंबर्स की सूची होगी
अब आप ruby में while लूप लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
अब आगे until लूप देखते हैं
ruby में until लूप का रचनाक्रम निम्न प्रकार है:
until boolean एक्सप्रेशन
ruby code
end
एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें gedit space until hyphen loop dot rb space & ampersand
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
इस उदाहरण में मैंने एक until लूप घोषित किया है
हमने एक लोकल वेरिएबल i घोषित किया और इसे 0 से प्रारम्भित किया
फिर हम एक until लूप घोषित करते हैं
यह लूप निष्पादित होगा अगर वेरिएबल i की वैल्यू 10 से ग्रेटर हो
puts मेथड आउटपुट प्रदर्शित करेगा
आउटपुट प्रदर्शित होने के बाद i की वैल्यू में 1 की कमी होती है
अगली बार दोहराते समय i इस काम की हुई वैल्यू को लेगा
हर बार दोहराते समय वेरिएबल i में कमी होती है
यह चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 11 तक न पहुँच जाये
इस पॉइंट पर until कंडीशन बंद हो जाएगी
इसके पश्चात लूप टूट जाता है और आउटपुट प्रिंट होना रुक जाता है
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें ruby space until hyphen loop dot rb और आउटपुट देखें
आउटपुट 0 से 10 तक नंबर्स की सूची रखेगा
अब redo कन्स्ट्रक्ट पर जाते हैं
ruby में redo के लिए रचनाक्रम निम्न प्रकार दिया है :
a collection of objectseach do item
a conditional statement
ruby कोड
redo
end कंडीशनल
end लूप
मेरे पास redo लूप का एक कार्यकारी उदहारण है
अब टर्मिनल खोलते हैं और टाइप करें gedit space redo hyphen loop dot rb space & ampersand
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
इस उदाहरण में मैंने एक each लूप घोषित किया है
10 से 20 तक नंबर्स दोहराने के लिए हमने एक each लूप घोषित किया
फिर हम एक if कंडीशनल स्टेटमेंट समझाते हैं
लूप 10 से 20 तक प्रत्येक नंबर के लिए निष्पादित होगा
अगर i की वैल्यू 20 के बराबर है तभी यह इनर कंडीशनल if कंडीशनल ब्लॉक एंटर करेगा
each लूप में घोषित puts मेथड आउटपुट दर्शाता है
जब प्रोग्राम if कंडीशनल ब्लॉक एंटर करता है तो यह पहले आउटपुट प्रिंट करेगा
फिर यह redo निष्पादित करेगा
redo सर्वाधिक भीतरी लूप का दोहराव निष्पादित करेगा
लूप कंडीशन को जाँचे बिना ही यह ऐसा करेगा
हमारी कंडीशन है if i == 20
परिणाम अनंत लूप होगा चूँकि i की वैल्यू 20 से नहीं बदलेगी
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें ruby space redo hyphen loop dot rb
और आउटपुट देखें
आउटपुट में एक अनंत लूप होगा जिसका कोई अंत नहीं
अनंत लूप को समाप्त करने के लिए ctrl+c दबाएं
अब break स्टेटमेंट को देखते हैं
ruby में break स्टेटमेंट का रचनाक्रम है
a looping statement
a conditional statement
break
end कंडीशनल
ruby कोड
end लूप
एक उदाहरण देखते हैं
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit space break hyphen loop dot rb space ampersand
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
मैंने इस उदाहरण में एक each लूप घोषित किया है
यह उसके समान है जो हमने पहले उपयोग किया
यहाँ puts मेथड आउटपुट में 11 से 19 तक नंबर्स प्रदर्शित करेगा
एकबार जब वैल्यू 20 हो जाती है तो प्रोग्राम कंडीशनल if ब्लॉक एंटर करता है
इस पॉइंट पर break स्टेटमेंट आएगा और यह लूप से बहार निकल जायेगा
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें
ruby space break hyphen loop dot rb
और आउटपुट देखें
आउटपुट में 10 से 19 तक नंबर्स होंगे
अब आप अपना break कन्स्ट्रक्ट बनाने में सक्षम होने चाहिए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
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने उपयोग करना सीखा
while लूप
until कन्स्ट्रक्ट
redo
break कन्स्ट्रक्ट
एक नियत कार्य की तरह
100 से 115 के बीच तक नंबर्स लें जो फैरन्हाइट को दर्शाते हैं
निम्न उपयोग करके एक ruby प्रोग्राम लिखें
उपयुक्त लूप कन्स्ट्रक्ट
जो फैरन्हाइट से सेल्सियस कन्वर्जन फॉर्मूले को उपयोग करता है
दी गयी नंबर्स की रेंज के विरुद्ध
the temperature has reached a certain degree celcius and has become unbearable आउटपुट दर्शाने के लिए
जब सेल्सियस में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है